जो कि देखिये तकिया है। उसके बगल में बोर्ड भी है।

इस महिला ने मंच पे जाके भाषण दे रहे हैं और सब भाई सब --

बैंक ऑफ़ इंडिया का ए ए_टी_म है जो कि बहुत --

आसानी से इसमें पैसे निकले जाते है। इसमें ए _टी_म पिन नंबर डालो पैसे आसानी से निकाल --

बहोत ही खूबसूरत चीज़ है। देखिये यहाँ पे एक लड़की को --

कम्पटीशन बोलो कम्पटीशन का --

देखिए दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे है जो कि बहोत ही ख़तरनाक --

देखिये भाईसाब यहाँ पे जो भी है रस्सी की --

काम कर रहे हैं। काफी बेहतर होगा और काफी मेहनत से बनाते हैं रस्सी बहुत ही --

ये फ्रिज कूलर ए.सी. हर --

इस सामान है जो है कि बहोत ही --

देखिये भाईसाब यहाँ पे बोहोत ही अच्छा और बोहोत ही सूंदर पिक्चर है जोकि देखिये भाईसहब ने कितना --

हम आपको दिखा रहे है देखिए कितना हरा भरा है। देखिये पेड़ है जो कि काफी सुन्दर दिखाई दे --

की काफी सुन्दर और बेहतरीन । ये बहोत ।